सामने की तरफ एक रेड कलर की टीशर्ट पहन कर आदमी पहाड़ के अंदर जाते हुए नजर आ रहे --

इक ऑफिस है। ऑफिस के बाहर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई है। ऑफिस शीशे की बनी हुई है।

एक बहोत ऐतिहासिक सी जगह है जहां पर मकबरे बने हुए हैं जगह पर कोई नज़र नहीं आ रहा है।

उसकी दीवार भी रेड कलर की है बहुत पुरानी- सी उसके सामने एक छोटा -सा गार्डन है पीछे की तरफ हरे- हरे बड़े-बड़े पेड़ निकले हुए --

इक मैंरिज हॉल जैसी जगह दिख रही है।

इक जिम है। जिम में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। जिम की साइड में एक --

डंबल रखे हुए हैं डंबल ब्लैक कलर के दिख रहे हैं।

इक बोहत ही सुनसान सा घर है। घर बंद नजर आ रहा है। उसके सामने एक लंबी सी रोड है।

मैंदान में सीढ़ियां बोहोत अच्छी बनी हुई हैं। उसके आगे ग्रे कलर की बड़े-बड़े पत्थर लगे हुए हैं टाइल्स जैसे।

एक मकान भी बना हुआ है। मकान पीले कलर का है। उसके पीछे एक टावर लगा हुआ है। साइड में एक पेड़ भी निकला हुआ है।

साइड में बैग भी रखा हुआ है और सब लड़के चेयर में बैठे हुए हैं।

एक पत्थर का बना हुआ बेंच बैठने वाला बेंच भी बना हुआ है। बेंच खाली है।

एक कॉलेज फंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। साइड में माईक के पास ब्लू कलर की साड़ी पहनकर मैंम खड़ी हुई हैं।